जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक पंडाल है पंडाल के अंदर एक सरस्वती माँ का मूर्ति लगा हुआ है और पंडाल काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया ।

बोंदरी की हुई है और इसके दाएं साएड में हरे-भरे पेर हैं इसके बाएं साएड में कुछ सूखे रेत हैं।

एक बल्‍ब लगा हुआ है पास से एक तार भी गुजरा हुआ है यहां पर बहुत सारे वर्कस भी --

उसमें से एक बोर्ड पे लिखा हुआ है वसुधा केंद्र डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर ।

वर्कर जो है गुलाबी शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए है वाइट कलर का कैप लगाए हुए है।

बिसलेरी की बोतल हैं साउंड हैं दुकान को काफी अच्छे से डेकोरेट किया हैं --

बहुत सारे तरह के पेंटिंग भी लगे हुए है यहां पे तीन आदमी खड़ा है उनके आगे एक टेबल रखा हुआ है उस पे कैंडल जल रहा है।

फूल रखे हुए हैं यहां पर एक लेडिज है जो आसमानी कलर की सूट और रेड कलर की स्वेटर पहने हुई हैं उसे--

का हुआ है किशोर न्याय परिषद कटिहार घर के पीछे--

आंख में चश्मा लगाए हुए है और यहां पर बहुत सारे दवाई के डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर लाइट --

उसी के डोर में बहुत सारे गेंद भी रखे हुए है यहाँ पर बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है एक आदमी है जो ब्लू शर्ट ब्लू जीन्स पहने हुए है उसके पास --

वो देख रहे हैं आगे मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं एक--